एक काली कार भी है पीछे उसको टोचर करके लेकर जा रहे हैं।

यहां पर बड़ा सां गाड़ियों का शोरूम हैं यहां पर बहोत सी गाड़ियां लाइन से लगाई गई हैं।

यहां पर एक बड़े सा घ झोपड़पट्टी का घर है उसके ऊपर टीना भी दिख रहे हैं।

गाड़ी के टायर भी दिख रहे हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।